इस तस्वीर में एक कैफे दिख रहा है।

यहां पर काफी सारे पेड़ पौधे हरे रंग के लगे हुए हैं।

और नीचे काफी सारी घास भी लगी हुई है।

बीच में एक छोटा सा पेड़ भी लगा हुआ है।

एक नाव के ऊपर एक पुरुष खड़ा हुआ है।

दो पुरुष खड़े हुए हैं और एक बैठा हुआ है।

इस तस्वीर में एक रोड दिखाई दे रही है।

पीछे बड़ा सा बाग है।

इसके नीचे एक सफेद रंग की गाड़ी खड़ी हुई है।

जिसके बगल में एक बड़ी सी रोड है जिसपे गाड़ी जा रही है।

दो तीन लोग खड़े हुए है आपस में बात कर रहे हैं।

इसके नीचे एक सफेद रंग की गाड़ी खड़ी है।

जोकि क्रीम कलर की है।

जो पीले रंग की है और बाहर गार्डन बना हुआ है जिसमें हरे-हरे रंग की काफी घास भी लगी हुई है।